और वो बंधा हुआ रस्सियों से है।

ये यहां पर हमें कुछ मंदिर सा दिख रहा है।

एक पीछे की तरफ चप्पू चला रहा है और एक आगे की तरह चप्पू चला रहा है।

यहां पर हमें बहोत सारे लोग दिख रहे हैं।

जिस पर कुछ लोग बैठकर काम कर रहे हैं अपने कैंप्यूटर से।

यहां पर हमें कुछ कंटेनर हरे कलर के भरे हुए सामानों से दिख रहे हैं।